ये एक होटल जैसा दृश्य दिखाई दे रहा है।

कुछ पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे है।

सामने एक गार्डन भी दिखाई दे रहा है।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

सामने एक बड़ा मकान दिखाई दे रहा है।

एक व्यक्ति बैठा हुआ भी दिखाई दे रहा है।

कुछ व्यक्ति बाइक पर बैठे हुए भी दिखाई दे रहे हैं।

ये एक पार्क जैसा दृश्य दिखाई दे रहा है।

ये एक तलाब जैसा दृश्ये दिखाई दे रहा है।

कुच मकान बने हुए भी दिखाई दे रहे हैं।

ये एक स्टेशन जैसा दृश्य दिखाई दे रहा है।

कुछ व्यक्ति खड़े बैठे भी दिखाई दे रहे हैं।

ये एक मंदिर जैसा द्रश्ये दिखाई दे रहा है।

कुछ महिलाएं मंदिर में बैठी हुई दिखाई दे रही है।

और एक महिला खड़ी हुई भी दिखाई दे रही है।

ये एक जिम जैसा दृश्य दिखाई दे रहा है।

कुछ व्यक्ति महिला खड़ी हुई भी दिखाई दे रही है।

ये एक बैंक जैसा दृश्य दिखाई दे रहा है।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

ये एक हॉस्पिटल जैसा दृश्य दिखाई दे रहा है।

पेड़-पौधे भी दिखाई दे रहे हैं।

ये एक गन्ने का ठेला दिखाई दे रहा है।

ये एक प्रसिद्ध मंदिर जैसा दिखाई दे रहा है।

सामने एक महिला चेयर पर बैठी हुई दिखाई दे रही है।

एक बाइक खड़ी हुई भी दिखाई दे रही है।

ये एक रूम जैसा दर्शे दिखाई दे रहा है।

लाइट जलती हुई भी दिखाई दे रही है।

ये एक होटल जैसा दृश्य दिखाई दे रहा है।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

ये एक ग्राउंड जैसा द्रश्य दिखाई दे रहा है।

एक व्यक्ति भी खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है।

क्रिकेट स्टेडियम जैसा दृश्य दिखाई दे रहा है।

कुछ लड़कियां क्रिकेट खेलती हुई दिखाई दे रही है।

ये एक होटल जैसा दृश्य दिखाई दे रहा है।

ये एक पार्क जैसा दृश्य दिखाई दे रहा है।